अह एग्जाम हॉल जैसे है यहां कुछ लोग एग्जाम लिख रही हैं एक टीचर --

मामूली कपड़ा प पंचा लुंगी जैसा पहना हुआ है और तीन लोग पैंट शर्ट पहना हुआ हैं।

ये तो एक म् पानी का नदी जैसी है यहां तो एक--